'' यहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा देखा जा सकता है जिसके बीचों बीच पेंट किया गया है एक तरफ लाल कलर से पेंट किया गया है जो ऊपरा भाग दिखाई दे रहा है तथा निचले भाग में री पेंट ब्लू कलर से पेंट किया गया है। दोनों पर कोई डिजाइन से-''''-'''' ''

ऊपर आकाश देखा जा सकता हैकुछ तारे लटके देखे जा सकती हैं इन सभी को बेरीकैड जैसे देखे जा सकते है नीचे धरती देखी जा सकती है ऊपर कुछ बेरीकैड जैसे देखे जा सकते है।

ऊंपर ब्लू क्लर का आकाश साफ देखा जा सकता है इसमें कुछ बादल भी देखे जा सकते हैं। आंगे एक स्कूटर खड़ी देखी जा सकती है। स्कूटर का क्लर हरा दिखाई दे रहा है। बगल में एक व्यक्ति बैठा देखा जा सकता है। कुछ टायर भी देखे जा सकते हैं।

ऊपर आकाश देखा जा सकता है। पीछे भी कुछ बड़े से पुल जैसा देखे जा सकते हैं पीछे एक मंदिर जैसा कुछ दिखाई दे रहा है आगे एक बड़ा सा बांस लगा देखा जा सकता है।

यहाँ पर कुछ हरे-हरे पेड़-पौधे देखे जा सकते हैं। कुछ पेड़ों की टहनियों देखी जा सकती हैं ।

आकाश का कलर ब्लू दिखाई दे रहा है। जिसमे कुछ सफ़ेद कलर के बादल भी देखे जा सकता हैं। नीचे पानी भरा देखा जा सकता है।

यहाँ पर आगे कुछ स्कूटर्स खड़े देखे जा सकते हैं। कुछ काले कलर के स्कूटर दिखाई दे रहे हैं। कुछ ब्लू कलर के भी --